ये तालाब है और तालाब कुछ सीढ़ी है और लाल पिंड है आदमी नहाने आता है यहाँ और बगल में जो है हरा-हरा घास है।

चिट्ठा बन रहा और डॉक्टर बैठे भी हैं चिट्ठा बना रहे हैं और बोहोत अच्छा क्लिनिक दिखाई दे रहा है |

अंदर से सजाया गया है मुनाफा फूल है।

और जंगल में जानवर है खाई है घास है पेड़ है बहुत सारा पौधा है और जंगली जानवर है इसमें।

सफेद कलर की है आदमी पेट्रोल ले के जा रहे है पेट्रोल भरा जाता है पेट्रोल के किनारे एक बहुत बड़ा बोर्ड है उसमे --

और डॉक्टर जो सही से --